यहाँ पर हमको एक तो हॉस्पिटल का रूम दिख रहा है जिसमे बहुत सारे--

और समुंदर के साइड मे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर दिख रहा है और ऊपर के तरफ--

और साइड मे बहुत बड़े बड़े काउन्टर है जिसमे बहुत सारे बर्तन रखे हुए है।

और बीच में भी बहोत सारे बर्तन रखे हुए है और कुछ पल्स्टिक की बाल्टिया रखी हुई है और कुछ लोग खडे है और कुछ लोग बेठे है।

और पीछे की तरफ बहोत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है और एक बड़ा सा टॉवर दिख रहा है।

यहा पर एक मुझे बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो सायद फर्निचर की दुकान है जिसमे बहुत सारी अलमारिया--

रखी हुई है और अलमारियों के ऊपर कुछ चेयर नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारे टेबल रखे हुए है और टेबल के बगल मे बहुत सारी चेयरे रखी हुई है।

जो रेड कलर की है और बाहर की तरफ बहुत सारे हरे हरे पेड़ दिख रहे है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है और नदी के बगल में एक घर दिखाई दे रहा है ।

और पीछे की तरफ बहुत सारे पौधे दिख रहे है और पेड़ दिख रहे है।

और जो पानी है वो हरा रंग का है और एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है।

यहाँ पर हमको एक बड़ा सा हाल दिखाई दे रहा है जिसके साइड में दो फौआरे लगे हुए है।

यहा पर हमको एक रूम दिख रहा है जो सायद किसी रेस्टोरेंट का सिटींग एरिया है और जिसमे चार टेबल नजर आ रहे है।

और ऊपर के तरफ लाईटे नजर आ रही है जो अलग अलग कलर की है।

कमरा दिख रहा है जिसके साइड मे एक बड़ा सा काउन्टर है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे है और बड़े बड़े फसल नजर आ रहे है और खुला आसमान नजर आ रहा है।

और एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है जो भूरा कलर का है और रेड कलर का--

और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे है।

यहां पर हमको एक रूम का सजा हुआ एरिया दिख रहा है जिसमें बहोत सारे--

बलून्स लगे हुए है और जिसमे एक बॉर्डर भी है जिसमे लिखा हुआ है हैप्पी ऍनिवर्सरी ।

कपड़ों से सजा हुआ है और मुझे बहुत सारे चेयर्स भी दिख रहे है।

यहां पर हमको एक बड़ा सा खेत दिख रहा है जिसके बीच में एक पतला सा रास्ता भी है।

यहां पर हमको एक बड़ा सा रूम दिख रहा है जो शायद किसी चर्च का है और बहोत सारे बेंच दिख रहे हैं।

और पीछे के तरफ एक बिल्डिंग दिख रहा है जो की--

यहाँ पर हमको एक रूम दिख रहा है जो किसी आय वेयर --

और दो लोग नजर आ रहे है और बहोत बड़े बड़े सोनर पेनल नजर आ रहे है।

और पीछे के तरफ मुझे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

और उसके अंदर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं और आसपास लोग बहुत सारे कपड़े खरीद रहे--

जो की गुलाबी कलर के ब्लू कलर के बैगनी कलर के है।

यहाँ पर हमको ये खुलासा एरिया दिख रहा है।

जो जिसमे बहुत बड़ा जंगल है और पीछे की तरफ बड़ा बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

यहां पर हमको एक रोड दिख रहा है जो कि शायद हाईवे है और रोड के साइड में कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

और यहाँ पर बहुत सारे टेबल रखे हुए है।

और जिम के चारों तरफ मिरर भी लगा हुआ है और ऊपर के तरफ पंखे भी है।

और ऊपर की तरफ दो प्लांट टंगे हुए हैं और साइड की तरफ दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं।

यहाँ पर हमको ये बहुत सारे पेड़ दिख रहे है और कुछ बाइक भी दिख रहा है।

और एक पेड़ जो पिंक कलर के फूल से भरा हुआ है और कुछ लोग भी दिख रहें है जो बाइक पर है।

यहाँ पर हमको एक सलून का एरिया दिख रहा है जिसमे बहुत सारे मिरर लगे हुए है।

और बहुत सारे बलून्स भी लगे हुए है।

यहाँ पर हमको एक रेस्टोरान्ट का सीटींग एरिया दिख रहा है जिसमे--

तोफा दिख रहा है और ग्रीन कलर का कुशन रखा हुआ है और टेबल दिख रहे हैं जिसमें--

ब्लू कलर का बोतल रखा हुआ है और ग्री ग्रीन कलर का कैचप बोतल रखा हुआ है और पीछे की तरफ एक बैनर भी।

यहाँ पर हमको एक पार्क का एरिया दिख रहा है और पीछे की तरफ एक घर दिख रहा है।